इसपे बहोत सारे किताबे रखी हुई है।

उसमे नीले ए लाल कलर का-- कालीन बिछा हुआ है और टाइल्स लगे हुए हैं।